देख पा रहे है की यहा पर हमे कुछ फ्लावर पॉर्ट्स भी नजर आ रहे है दो तीन बड़े-बड़े सामने की तरफ ग्रे कलर के रखे हुए है जिसमे गोल्डन कलर के ग्रीन कलर के प्लांट्स उग रहे है और यहाँ पे हमें गोल्डन कलर का भी फ्लावर पॉट देखने को मिल रहा है जिसमे आर्टिफीसियल प्लांट --

अ जो की डिजाइन है वहां का और हम देख पा रहे हैं उसका उस अह उस रास्ते के उस गैलरी के दोनों तरफ हमें ब्राउन कलर के अ गेट्स नजर आ रहे हैं जो की लकड़ी के बने हुए हैं और काफी आगे तक जा रहे हैं।

देख सकते है की बहुत ही प्यारा हमे व्हिव देखने को मिल रहा है। बहुत डिझाईन वाली मं- मंदिर देखने मिल रही है अ उस जो मंदिर है मंदिर मै काफी प्यारा यूनिकसा डिझाईन बनया गया काफी अछि तरिके से कला कृती करी गई है और हम देख पा रहे है।

ते प्यारा एक स्विमिंग पूल को देख पा रहे है जिसमे जिसमे नीचेकी तरफ पानी के अंदर एक डिझाईन बना हुआ एक फूल का और हम देख पा रहे है की वहा पर साइड मै काफी प्लांट्स वगैरा उगे हुए है और कूच स्पोर्ट्स वगैरा बनाये गये वहा पे।

तो हम इस पिक्चर मे हम देख सकते है एक ब्लाॅक कलर का काफी बड़ा सा एक बोर्ड लगा रहा है रेक्टांगुलर शेप मे और हम देख पा रहे है उस के दोनों कोने मे काफी प्यारे से अह ब्लू कलर मे डिजाईन बना के रखे हुए है तो हम वहा पे --

सकते है हमे काफी प्यारी सी एक इमारत देखने को मिल रही जो की वह बनी पड़ी है और काफी अंग्रेजो के टाइम की वो बिल्डिंग लग रही है ऊपर की तरफ जो छत बनाई गयी है उसमे भी हम पीलर्स को देख पा रहे है जो की एक राउंड शेप मे बनाए गए है।

देख सकते है की बहुत ही प्यारा उपर की तरफ ब्राउन कलर का शेड देखने को मिल रहा है जहा कुछ जो की लकडीयो के बेस पे वो बनाया गया है और वहा पर नीचे की तरफ हम बहुत सारे ब्राउन कलर के पिल्लरर्स को भी देख पा रहे है ज --